नमस्कार दोस्तों जियोजेब्रा में मेंश्योरेशन पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न ज्ञात करना सीखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिधि
गोले और शंकु का धरातल क्षेत्रफल
गोले और शंकु का आयतन
हम मानते हैं कि आपको जियोजेब्रा के कार्य का बुनियादी ज्ञान है
जियोजेब्रा पर प्रासंगिक ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकार्ड करने के लिए मैं उबंटू लिनक्स ओएस वर्जन 1110 जियोजेब्रा वर्जन 32470 का उपयोग कर रहा हूँ
हम निम्न जियोजेब्रा टूल्स का उपयोग करेंगे
सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स सर्किल विथ सेंटर एंड रेडियस एलिप्स पॉलीगॉन न्यू पॉइंट एंड इंसर्ट टेक्स्ट नया जियोजेब्रा विंडो ओपन करते हैं
दश होम और मीडिया एप्स पर क्लिक करें
टाइप के नीचे एड्यूकेशन और जियोजेब्रा चुनें
अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं
पिछले ट्यूटोरियल की फाइल quadrilateralजीजीबी का उपयोग करें
फाइल ओपन पर क्लिक करें quadrilateralजीजीबी पर क्लिक करें
ओपन पर क्लिक करें
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है
एआरईए ओएफ थे रोम्बस 12 प्रोडक्ट ओएफ डायगोनल्स इसे प्रदर्शित करने के लिए इंसर्ट टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें
ड्राइंग पद पर क्लिक करें एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है
दोहरे उद्धरण चिन्ह ओपन करें टाइप करें एआरईए ओएफ थे रोम्बस दोहरे उद्धरण चिन्ह बंद करें संयोजन के लिए कोष्ठक ओपन करें टाइप करें 12 स्पेस फ़ स्पेस जी कोष्ठक बंद करें फ़ और जी समचतुर्भुज के विकर्ण हैं
ओक पर क्लिक करें
यहाँ ड्राइंग पैड पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्रदर्शित है
आगे परिधि ज्ञात करें
इंसर्ट टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें
ड्राइंग पद पर क्लिक करें एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है
दोहरे उद्धरण चिन्ह ओपन करें टाइप करें Perimeter ओएफ थे रोम्बस दोहरे उद्धरण चिन्ह बंद करें कोष्ठक खोलें 4 स्पेस आ कोष्ठक बंद करें आ समचतुर्भुज की भुजा है
ओक पर क्लिक करें
यहाँ समचतुर्भुज की परिधि ड्राइंग पैड पर प्रदर्शित है
अब फाइल को सेब करें
फाइल और सेव एएस पर क्लिक करें
मैं फाइल को नाम rhombus area पेरीमीटर टाइप करूँगा

सेव पर क्लिक करें
एक नियत कार्य के रूप में मैं चाहता हूँ कि आप समलंब का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें
cons trapeziumजीजीबी फाइल के आउटपुट का उपयोग करें
ऑब्जेक्ट जी का ब के रूप में नाम बदलें
क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला aब2 ह परिधि के लिए फॉर्मूला abcडी नियत कार्य का आउटपुट इस तरह दिखना चाहिए
एक गोले को बनाने के लिए नया जियोजेब्रा विंडो ओपन करें
फाइल न्यू पर क्लिक करें
टूल बार में सर्किल विथ सेंटर एंड रेडियस टूल पर क्लिक करें
ड्राइंग पैड में बिंदु आ पर क्लिक करें
एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है
रेडियस में वेल्यू 2 प्रविष्ट करें
ओक पर क्लिक करें
केंद्र आ और त्रिज्या 2सीएम के साथ एक वृत्त बन गया है
टूलबार से न्यू पॉइंट टूल चुनें वृत्त की परिधि पर बिंदु ब को चिन्हित करें
सेगमेंट बेटवीन त्वो पॉइंट्स टूल चुनें
बिंदु आ और ब को वृत्त की त्रिज्या के रूप में जोड़ें
वृत्त की परिधि को छूता क्षैतिज दिशा में सीडीई एक दीर्घवृत्त बनाएँ
एलिप्स टूल पर क्लिक करें
परिधि पर एक दूसरे के विपरीत बिंदु सी और डी और तीसरे बिंदु ई को वृत्त के अंदर विकर्णतः चिन्हित करें
यहाँ गोला बन गया है
अब गोले का धरातल क्षेत्रफल ज्ञात करें
इंसर्ट टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें
0ड्राइंग पद पर क्लिक करें
एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है
कृपया टेक्स्ट बॉक्स के ड्रॉप डाउन में विशेष अक्षरों का पता करें
π पता करने के लिए नीचे स्क्रोल करें
दोहरे उद्धरण चिन्ह खोलें सरफेस एआरईए ओएफ थे स्फीयर टाइप करें दोहरे उद्धरण चिन्ह बंद करें प्लस कोष्ठक खोलें 4 स्पेस सूची से π चुनें स्पेस आ सूची से स्क्वेयर चुनें कोष्ठक बंद करें
ओक पर क्लिक करें
गोले का धरातल क्षेत्रफल यहाँ प्रदर्शित होता है
मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे ड्रैग करके नीचे रखता हूँ
अब आयतन ज्ञात करें
इंसर्ट टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें
ड्राइंग पद पर क्लिक करें एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन होता है
दोहरे उद्धरण चिन्ह खोलें वोल्यूम ओएफ थे स्फीयर टाइप करें दोहरे उद्धरण चिन्ह बंद करें प्लस कोष्ठक खोलें 43 स्पेस सूची से π चुनें स्पेस आ सूची से क्यूब चुनें कोष्ठक बंद करें
ओक पर क्लिक करें
गोले का आयतन यहाँ प्रदर्शित होता है
मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे ड्रैग करके नीचे रखता हूँ
अब एक शंकु बनाएँ
पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करें
बिंदु सी डी और बाहरी बिंदु फ़ पर क्लिक करें और फिर से सी पर क्लिक करें
सेगमेंट्स बेटवीन त्वो पॉइंट्स चुनें बिंदु फ़ और आ को जोड़ें
हमें शंकु की ऊँचाई प्राप्त होती है
मैं ऑब्जेक्ट ब को ह नाम में बदलता हूँ जो शंकु की ऊँचाई सूचित करता है
ऑब्जेक्ट ब पर राइट क्लिक करें
रिनेम पर क्लिक करें
ब को ह में बदलें ओक पर क्लिक करें
मैं ऑब्जेक्ट c 1 को भी एस में बदलता हूँ जो शंकु की तिर्यक ऊँचाई सूचित करता है
ऑब्जेक्ट c 1 पर राइट क्लिक करें
रिनेम पर क्लिक करें
c 1 को एस में बदलें
ओक पर क्लिक करें
अब शंकु का धरातल क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें
हम या तो टूलबार से इंसर्ट टेक्स्ट टूल का उपयोग कर सकते हैं या हम हम इनपुट बार का उपयोग कर सकते हैं
मैं इनपुट बार का उपयोग करूंगा
कृपया इनपुट बार की ड्रॉप डाउन सूची में से विशेष अक्षर पता करें
π के लिए नीचे स्क्रोल करें
इनपुट बार में टाइप करें सर्फेसियरिया कोष्ठक खोलें सूची से πचुनें आ स्पेस एस प्लस सूची से πचुनें स्पेस आ सूची से स्क्वेयर चुनें कोष्ठक बंद करें एंटर दबायें
अलजेब्रा व्यू में शंकु का धरातल क्षेत्रफल प्रदर्शित होता है
कृपया ध्यान दें जब हम इनपुट बार का उपयोग करते हैं उत्तर अलजेब्रा व्यू में दिखाई देता है
अब आयतन ज्ञात करते हैं
वोल्यूम कोष्ठक खोलें 13 स्पेस सूची से π चुनें स्पेस आ सूची से स्क्वेयर चुनें स्पेस ह कोष्ठक बंद करें एंटर दबायें
शंकु का आयतन यहाँ अलजेब्रा व्यू में प्रदर्शित होता है
अब फाइल सेव करें
सेव एएस पर क्लिक करें
मैं फाइल का नाम sphere कोन टाइप करूँगा
सेव पर क्लिक करें
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न ज्ञात करना सीखा
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिधि
गोले और शंकु का धरातल क्षेत्रफल
शंकु और गोले का आयतन
हमने शंकु और गोला बनाना भी सीखा
एक नियत कार्य के रूप में मैं चाहता हूँ कि आप बेलन का आयतन और धरातल क्षेत्रफल ज्ञात करें
एक के नीचे दूसरा समान आकार के 2 दीर्घवृत्त बनाएँ
दीर्घवृत्तों के छोर जोड़ें
सेंटर टूल का उपयोग करके एक दीर्घवृत्त का केंद्र ज्ञात करें
केंद्र और छोर जोड़ें
ऑब्जेक्ट ब को ह में और ई को र में बदलें
सरफेस एआरईए 2 π rर ह वोल्यूम π r2h नियत कार्य का आउटपुट इस तरह दिखना चाहिए
इस उर्ल पर उपलब्ध विडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ